मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
जब मैं मन की बात करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आपके बीच आपके परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हूँ
हमारी छोटीछोटी बातें जो एकदूसरे को कुछ सिखा जाये जीवन के खट्टेमीठे अनुभव जो जीभर के जीने की प्रेरणा बन जाये बस यही तो है मन की बात
आज 2021 की जनवरी का आखिरी दिन है
क्या आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले तो 2021 शुरू हुआ था लगता ही नहीं कि जनवरी का पूरा महीना बीत गया है समय की गति इसी को तो कहते हैं
कुछ दिन पहले की ही तो बात लगती है जब हम एक दूसरे को शुभकमनाएं दे रहे थे फिर हमने लोहड़ी मनाई मकर संक्रांति मनाई पोंगल बिहु मनाया
देश के अलगअलग हिस्सों में त्योहारों की धूम रही
23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया और 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस की शानदार परेड भी देखी
राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को सम्बोधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है
इन सभी के बीच एक और कार्य हुआ जिसका हम सभी को बहुत इंतजार रहता है ये है पद्म पुरस्कारों की घोषणा
राष्ट्र ने असाधारण कार्य कर रहे लोगों को उनकी उपलब्धियाँ और मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया
इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अलगअलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है अपने कामों से किसी का जीवन बदला है देश को आगे बढ़ाया है
यानी जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनसंग हीरोज को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी वो इस बार भी कायम रखी गई है
मेरा आप सभी से आग्रह है कि इन लोगों के बारे में उनके योगदान के बारे में जरुर जानें परिवार में उनके बारे में चर्चा करें
देखिएगा सबको इससे कितनी प्रेरणा मिलती है
इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली
हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती
हमारे खिलाड़ियों का हार्ड वर्क और टीमवर्क प्रेरित करने वाला है
इन सबके बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ
हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है
हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया
इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है
अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है
मेरे प्यारे देशवासियो इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी करीबकरीब एक साल पूरा हो गया है
जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है वैसे ही अब हमारा वैक्सिनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है
आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है
आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सिनेशन भी कर रहे हैं
सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वारियर का टीकाकरण कर चुका है जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन
साथियो मदेनइंडिया वैक्सीन आज भारत की आत्मनिर्भरता का तो प्रतीक है ही भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक है
नामो App पर यूपी से भाई हिमांशु यादव ने लिखा है कि मदेनइंडिया वैक्सीन से मन में एक नया आत्मविश्वास आ गया है
मदुरै से कीर्ति जी लिखती हैं कि उनके कई विदेशी दोस्त उनको मेसेज मैसेज भेजकर भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं
कीर्ति जी के दोस्तों ने उन्हें लिखा है कि भारत ने जिस तरह कोरोना से लड़ाई में दुनिया की मदद की है उससे भारत के बारे में उनके मन में इज्जत और भी बढ़ गई है
कीर्ति जी देश का ये गौरवगान सुनकर मन की बात के श्रोताओं को भी गर्व होता है
आजकल मुझे भी अलगअलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की तरफ से भारत के लिए ऐसे ही संदेश मिलते हैं
आपने भी देखा होगा अभी ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके जिस तरह से भारत को धन्यवाद दिया है वो देखकर हर भारतीय को कितना अच्छा लगा
हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के दूरसुदूर कोने के निवासियों को रामायण के उस प्रसंग की इतनी गहरी जानकारी है उनके मन पर गहरा प्रभाव है ये हमारी संस्कृति की विशेषता है
साथियो इस वैक्सिनेशन कार्यक्रम में आपने एक और बात पर अवश्य ध्यान दिया होगा
संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत आज दवाओं और वैक्सीन को लेकर सक्षम है आत्मनिर्भर है
यही सोच आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी है
भारत जितना सक्षम होगा उतनी ही अधिक मानवता की सेवा करेगा उतना ही अधिक लाभ दुनिया को होगा
मेरे प्यारे देशवासियो हर बार आपके ढेर सारे पत्र मिलते है नामो App और माइगोव पर आपके मेसेजेज फोन कॉल्स के माध्यम से आपकी बातें जानने का अवसर मिलता है
इन्हीं संदेशों में एक ऐसा भी संदेश है जिसने मेरा ध्यान खींचा ये संदेश है बहन प्रियंका पांडेय जी का
23 साल की बेटी प्रियंका जी हिन्दी साहित्य की विद्यार्थिनी हैं और बिहार के सीवान में रहती हैं
प्रियंका जी ने नामो App पर लिखा है कि वो देश के 15 घरेलू पर्यटन स्थलों पर जाने के मेरे सुझाव से बहुत प्रेरित हुईं थीं इसलिए एक जनवरी को वो एक जगह के लिए निकलीं जो बहुत खास थी
वे जगह थी उनके घर से 15 किलोमीटर दूर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पैतृक निवास
प्रियंका जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अपने देश की महान विभूतियों को जानने की दिशा में उनका ये पहला कदम था
प्रियंका जी को वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें मिलीं अनेक ऐतिहासिक तस्वीरें मिलीं
उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है जब पूज्य बापू राजेंद्र जी के घर में रुके थे
वाकई प्रियंका जी आपका यह अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेगा
साथियो इस वर्ष से भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का समारोह अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है
ऐसे में यह हमारे उन महानायकों से जुड़ी स्थानीय जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली
साथियो हम आजादी के आंदोलन और बिहार की बात कर रहें हैं तो मैं नामो App पर ही की गई एक और टिपण्णी की भी चर्चा करना चाहूँगा
मुंगेर के रहने वाले जयराम विप्लव जी ने मुझे तारापुर शहीद दिवस के बारे में लिखा है
15 फरवरी नाइनटीन थर्टी त्वो 1932 को देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी
उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे वंदे मातरम और भारत माँ की जय के नारे लगा रहे थे
मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ और उनके साहस का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ
मैं जयराम विप्लव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ
वे एक ऐसी घटना को देश के सामने लेकर आए जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी
मेरे प्यारे देशवासियो भारत के हर हिस्से में हर शहर कस्बे और गाँव में आजादी की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ी गई थी
भारत भूमि के हर कोने में ऐसे महान सपूतों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए किए गए उनके संघर्षों और उनसे जुड़ी यादों को हम संजोकर रखें और इसके लिए उनके बारे में लिख कर हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए उनकी स्मृतियों को जीवित रख सकते हैं
मैं सभी देशवासियों को और खासकर के अपने युवा साथियों को आह्वान करता हूं कि वे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आजादी से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखें
अपने इलाके में स्वतंत्रता संग्राम के दौर की वीरता की गाथाओं के बारे में किताबें लिखें
अब जबकि भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष मनायेगा तो आपका लेखन आजादी के नायकों के प्रति उत्तम श्रद्दांजलि होगी
यंग राइटर्स के लिए इंडिया सेवेंटी फाइव के निमित्त एक इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है
इससे सभी राज्यों और भाषाओं के युवा लेखकों को प्रोत्साहन मिलेगा
देश में बड़ी संख्या में ऐसे विषयों पर लिखने वाले राइटर्स तैयार होंगे जिनका भारतीय विरासत और संस्कृति पर गहन अध्ययन होगा
हमें ऐसी उभरती प्रतिभाओं की पूरी मदद करनी है
इससे भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले थाउट लीडर्स का एक वर्ग भी तैयार होगा
मैं अपने युवा मित्रों को इस पहल का हिस्सा बनने और अपने साहित्यिक कौशल का अधिकसेअधिक उपयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूँ
इससे जुड़ी जानकारियाँ शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात में श्रोताओं को क्या पसंद आता है ये आप ही बेहतर जानते हैं
लेकिन मुझे मन की बात में सबसे अच्छा ये लगता है कि मुझे बहुत कुछ जाननेसीखने और पढ़ने को मिलता है
एक प्रकार से परोक्ष रूप से आप सबसे जुड़ने का अवसर मिलता है
किसी का प्रयास किसी का जज़्बा किसी का देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का जुनून यह सब मुझे बहुत प्रेरित करते है ऊर्जा से भर देते हैं
हैदराबाद के बोयिनपल्ली में एक स्थानीय सब्जी मंडी किस तरह अपने दायित्व को निभा रही है ये पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगा
हम सबने देखा है कि सब्जी मंडियों में अनेक वजहों से काफी सब्जी खराब हो जाती है
ये सब्जी इधरउधर फैलती है गंदगी भी फैलाती हैं लेकिन बोयिनपल्ली की सब्जी मंडी ने तय किया कि हर रोज बचने वाली इन सब्जियों को ऐसे ही फेंका नहीं जाएगा
सब्जी मंडी से जुड़े लोगों ने तय किया इससे बिजली बनाई जाएगी
बेकार हुई सब्जियों से बिजली बनाने के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो यही तो इनोवेशन की ताकत है
आज बोयिनपल्ली की मंडी में पहले जो वास्ते था आज उसी से वेल्थ क्रिएट हो रही है यही तो कचरे से कंचन बनाने की यात्रा है
वहाँ हर दिन करीब 10 टन वास्ते निकलता है इसे एक प्लांट में इकठ्ठा कर लिया जाता है
प्लांट के अंदर इस वास्ते से हर दिन 500 यूनिट बिजली बनती है और करीब 30 किलो बियो फ्यूएल भी बनता है
इस बिजली से ही सब्जी मंडी में रोशनी होती है और जो बियो फ्यूएल बनता है उससे मंडी की कैंटीन में खाना बनाया जाता है है न कमाल का प्रयास
ऐसा ही एक कमाल हरियाणा के पंचकुला की बड़ौत ग्राम पंचायत ने भी करके दिखाया है
इस पंचायत के क्षेत्र में पानी की निकासी की समस्या थी
इस वजह से गंदा पानी इधरउधर फैल रहा था बीमारी फैलाता था लेकिन बड़ौत के लोगों ने तय किया कि इस वाटर वास्ते से भी वेल्थ क्रिएट करेंगे
ग्राम पंचायत ने पूरे गाँव से आने वाले गंदे पानी को एक जगह इकठ्ठा करके फिल्टर करना शुरू किया और फिल्टर किया हुआ ये पानी अब गाँव के किसान खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यानी प्रदूषण गंदगी और बीमारियों से छुटकारा भी और खेतों में सिंचाई भी
साथियो पर्यावरण की रक्षा से कैसे आमदनी के रास्ते भी खुलते हैं इसका एक उदाहरण अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी देखने को मिला
अरुणाचल प्रदेश के इस पहाड़ी इलाके में सदियों से मोन शुगु नाम का एक पेपर बनाया जाता है
ये कागज यहाँ के स्थानीय शुगु शेंग नाम के एक पौधे की छाल से बनाते हैं इसलिए इस कागज को बनाने के लिए पेड़ों को नहीं काटना पड़ता है
इसके अलावा इसे बनाने में किसी केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं होता है यानी ये कागज पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और स्वास्थ्य के लिए भी
एक वो भी समय था जब इस कागज का निर्यात होता था लेकिन जब आधुनिक तकनीक से बड़ी मात्रा में कागज बनने लगे तो ये स्थानीय कला बंद होने की कगार पर पहुँच गई
अब एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता कलिंग गोम्बू ने इस कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है इससे यहाँ के आदिवासी भाईबहनों को रोजगार भी मिल रहा है
मैंने एक और खबर केरल की देखी है जो हम सभी को अपने दायित्वों का एहसास कराती है
केरल के कोट्टयम में एक दिव्यांग बुजुर्ग हैं एनएस राजप्पन साहब
राजप्पन जी पैरालाइसिस के कारण चलने में असमर्थ हैं लेकिन इससे स्वच्छता के प्रति उनके समर्पण में कोई कमी नहीं आई है
वो पिछले कई सालों से नाव से वेम्बनाड झील में जाते हैं और झील में फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलें बाहर निकाल करके ले आते हैं
सोचिये राजप्पन जी की सोच कितनी ऊँची है
हमें भी राजप्पन जी से प्रेरणा लेकर स्वच्छता के लिए जहां संभव हो अपना योगदान देना चाहिए
मेरे प्यारे देशवासियो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अमेरिका के सान फ्रांसिस्को से बैंगलुरू के लिए एक नॉनस्टॉप फ्लाइट की कमान भारत की चार वूमेन पाइलट्स ने संभाली
दस हजार किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफ़र तय करके ये फ्लाइट सवा दोसौ से अधिक यात्रियों को भारत लेकर आई
आपने इस बार 26 जनवरी की परेड में भी गौर किया होगा जहां भारतीय वायुसेना की दो वूमेन आफिसर्स ने नया इतिहास रच दिया है
क्षेत्र कोई भी हो देश की महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि देश के गाँवों में हो रहे इसी तरह के बदलाव की उतनी चर्चा नहीं हो पाती इसलिए जब मैंने एक खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर की देखी तो मुझे लगा कि इसका जिक्र तो मुझे मन की बात में जरुर करना चाहिए
ये खबर बहुत प्रेरणा देने वाली है
जबलपुर के चिचगांव में कुछ आदिवासी महिलाएं एक राइस मिल में दिहाड़ी पर काम करती थीं
कोरोना वैश्विक महामारी ने जिस तरह दुनिया के हर व्यक्ति को प्रभावित किया उसी तरह ये महिलाएं भी प्रभावित हुईं
उनकी राइस मिल में काम रुक गया
स्वाभाविक है कि इससे आमदनी की भी दिक्कत आने लगी लेकिन ये निराश नहीं हुईं इन्होंने हार नहीं मानी
इन्होंने तय किया कि ये साथ मिलकर अपनी खुद की राइस मिल शुरू करेंगी
जिस मिल में ये काम करती थीं वो अपनी मशीन भी बेचना चाहती थी
इनमें से मीना राहंगडाले जी ने सब महिलाओं को जोड़कर स्वयं सहायता समूह बनाया और सबने अपनी बचाई हुई पूंजी से पैसा जुटाया
जो पैसा कम पड़ा उसके लिए आजीविका मिशन के तहत बैंक से कर्ज ले लिया और अब देखिये इन आदिवासी बहनों ने वही राइस मिल खरीद ली जिसमें वो कभी काम किया करती थीं
आज वो अपनी खुद की राइस मिल चला रही हैं
इतने ही दिनों में इस मिल ने करीब तीन लाख रूपये का मुनाफ़ा भी कमा लिया है
इस मुनाफे से मीना जी और उनकी साथी सबसे पहले बैंक का लोन चुकाने और फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही हैं
कोरोना ने जो परिस्थितियां बनाईं उससे मुकाबले के लिए देश के कोनेकोने में ऐसे अद्भुत काम हुए हैं
मेरे प्यारे देशवासियो अगर मैं आपसे बुदेलखंड के बारे में बात करूँ तो वो कौन सी चीजें हैं जो आपके मन में आएंगी इतिहास में रूचि रखने वाले लोग इस क्षेत्र को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ जोड़ेंगे
वहीँ कुछ लोग सुन्दर और शांत ओरछा के बारे में सोचेंगे
कुछ लोगों को इस क्षेत्र में पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी की भी याद आ जाएगी लेकिन इन दिनों यहाँ कुछ अलग हो रहा है जो काफी उत्साहवर्धक है और जिसके बारे में हमें जरुर जानना चाहिए
पिछले दिनों झांसी में एक महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ
हर किसी को आश्चर्य होता है स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड लेकिन यही सच्चाई है
अब बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर उत्साह बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है झाँसी की एक बेटी गुरलीन चावला ने
लाव की छात्रा गुरलीन ने पहले अपने घर पर और फिर अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती का सफल प्रयोग कर ये विश्वास जगाया है कि झाँसी में भी ये हो सकता है
झाँसी का स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल स्टे एटी होम कॉन्सेप्ट पर जोर देता है
इस महोत्सव के माध्यम से किसानों और युवाओं को अपने घर के पीछे खाली जगह पर या छत पर टेरेस गार्डेन में बागवानी करने और स्ट्रॉबेरीज उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है
नई टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे ही प्रयास देश के अन्य हिस्सों में भी हो रहे हैं जो स्ट्रॉबेरी कभी पहाड़ों की पहचान थी वो अब कच्छ की रेतीली जमीन पर भी होने लगी है किसानों की आय बढ़ रही है
साथियो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जैसे प्रयोग इनोवेशन की स्पिरिट को तो प्रदर्शित करते ही हैं साथ ही यह भी दिखाते हैं कि हमारे देश का कृषि क्षेत्र कैसे नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है
साथियो खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और अनेक कदम उठा भी रही है
सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे
मेरे प्यारे देशवासियो कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा
वह वीडियो पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर स्थित नया पिंगला गाँव के एक चित्रकार सरमुद्दीन का था
वो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे कि रामायण पर बनाई उनकी पेंटिंग दो लाख रुपये में बिकी है
इससे उनके गांववालों को भी काफी खुशी मिली है
इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इसके बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता हुई
इसी क्रम में मुझे पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बहुत अच्छी पहल के बारे में जानकारी मिली जिसे मैं आपसे साथ जरुर साझा करना चाहूंगा
पर्यटन मंत्रालय के रिजनल आफिस ने महीने के शुरू में ही बंगाल के गाँवों में एक इनक्रेडिबल इंडिया वीकेंड गेटवे की शुरुआत की
इसमें पश्चिम मिदनापुर बांकुरा बीरभूम पुरुलिया पूर्व बर्धमान वहाँ के हस्तशिल्प कलाकारों ने विजिटर्स के लिये हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप आयोजित की
मुझे यह भी बताया गया कि इनक्रेडिबल इंडिया वीकेंड गेटावेज के दौरान हैंडीक्राफ्ट्स की जो कुल बिक्री हुई वो हस्त शिल्पकारों को बेहद प्रोत्साहित करने वाली है
देशभर में लोग भी नएनए तरीकों से हमारी कला को लोकप्रिय बना रहे हैं
ओडिशा के राउरकेला की भाग्यश्री साहू को देख लीजिए
वैसे तो वे इंजिनियरिंग की छात्रा हैं लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन्होंने पट्टचित्र कला को सीखना शुरू किया और उसमें निपुणता हासिल कर ली है
लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पैंट कहाँ किया सॉफ्ट स्टोन्स सॉफ्ट स्टोन्स पर
कॉलेज जाने के रास्ते में भाग्यश्री को ये सॉफ्ट स्टोन्स मिले उन्होंने इन्हें एकत्र किया और साफ़ किया
बाद में उन्होंने रोजाना दो घंटे इन पत्थरों पर पट्टचित्र स्टाइल में पेंटिंग की
वह इन पत्थरों को पैंट कर उन्हें अपने दोस्तों को गिफ्ट करने लगीं
लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बोतलों पर भी पैंट करना शुरू कर दिया
अब तो वो इस आर्ट पर वर्कशॉप्स भी आयोजित करती हैं
कुछ दिन पहले ही सुभाष बाबू की जयन्ती पर भाग्यश्री ने पत्थर पर ही उन्हें अनोखी श्रद्धांजलि दी
मैं भविष्य के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ
आर्ट एंड कलर्स के जरिए बहुत कुछ नया सीखा जा सकता है किया जा सकता है
झारखण्ड के दुमका में किए गए एक ऐसे ही अनुपम प्रयास के बारे में मुझे बताया गया
यहाँ मिडल स्कूल के एक प्रिंसिपल ने बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिए गाँव की दीवारों को ही अंग्रेजी और हिंदी के अक्षरों से पैंट करवा दिया साथ ही उसमें अलगअलग चित्र भी बनाए गए हैं इससे गाँव के बच्चों को काफी मदद मिल रही है
मैं ऐसे सभी लोगों का अभिनन्दन करता हूँ जो इस प्रकार के प्रयासों में लगे हैं
मेरे प्यारे देशवासियो भारत से हजारों किलोमीटर दूर कई महासागरों महाद्वीपों के पार एक देश है जिसका नाम है चिले
भारत से चिले पहुँचने में बहुत अधिक समय लगता है लेकिन भारतीय संस्कृति की खुशबू वहाँ बहुत समय पहले से ही फैली हुई है
एक और खास बात ये है कि वहाँ पर योग बहुत अधिक लोकप्रिय है
आपको यह जानकार अच्छा लगेगा कि चिले की राजधानी सैंटियागो में 30 से ज्यादा योग विद्यालय हैं
चिले में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है
मुझे बताया गया है कि हाउस ओएफ डेप्यूटीज में योग दिवस को लेकर बहुत ही गर्मजोशी भरा माहौल होता है
कोरोना के इस समय में इम्यूनिटी पर ज़ोर और इम्यूनिटी बढ़ाने में योग की ताकत को देखते हुए अब वे लोग योग को पहले से कहीं ज्यादा महत्व दे रहे हैं
चिले की कांग्रेस यानी वहाँ की पार्लामेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया है
वहाँ 4 नवम्बर को नेशनल योगा डे घोषित किया गया है
अब आप ये सोच सकते हैं कि आखिर 4 नवम्बर में ऐसा क्या है 4 नवम्बर 1962 को ही चिले का पहला योग संस्थान होज़े राफ़ाल एस्ट्राडा द्वारा स्थापित किया था
इस दिन को नेशनल योगा डे घोषित करके एस्ट्राडा जी को भी श्रद्धांजलि दी गई है
चिले की पार्लामेंट द्वारा यह एक विशेष सम्मान है जिस पर हर भारतीय को गर्व है
वैसे चिले की संसद से जुड़ी एक और बात आपको दिलचस्प लगेगी
चिले सेनेट के वाइस प्रेसिडेंट का नाम रबिंद्रनाथ क्विन्टेरॉस है
उनका यह नाम विश्व कवि गुरुदेव टैगोर से प्रेरित होकर रखा गया है
मेरे प्यारे देशवासियो माइगोव पर महाराष्ट्र के जालना के डॉ स्वप्निल मंत्री और केरल के पलक्कड़ के प्रहलाद राजगोपालन ने आग्रह किया है कि मैं मन की बात में सड़क सुरक्षा पर भी आपसे बात करूँ
इसी महीने 18 जनवरी से 17 फरवरी तक हमारा देश सड़क सुरक्षा माह यानि रोड सेफटी मोंथ भी मना रहा है
सड़क हादसे आज हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में चिंता का विषय हैं
आज भारत में रोड सेफटी के लिए सरकार के साथ ही व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई तरह के प्रयास भी किये जा रहे हैं
जीवन बचाने के इन प्रयासों में हम सबको सक्रिय रूप से भागीदार बनना चाहिए
साथियो आपने ध्यान दिया होगा बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन जो सड़कें बनाती है उससे गुजरते हुए आपको बड़े ही इनोवेटिव स्लोगन्स देखने को मिलते हैं
थिस इस हाइवे नोट रनवे या फिर बीई एमआर
लते थान लते एमआर
ये स्लोगन्स सड़क पर सावधानी बरतने को लेकर लोगों को जागरूक करने में काफी प्रभावी होते हैं
अब आप भी ऐसे ही इनोवेटिव स्लोगन्स या कैच फ्रेजों माइगोव पर भेज सकते हैं
आपके अच्छे स्लोगन्स भी इस अभियान में उपयोग किए जायेंगे
साथियो रोड सेफटी के बारे में बात करते हुए मैं नामो App पर कोलकाता की अपर्णा दास जी की एक पोस्ट की चर्चा करना चाहूँगा
अपर्णा जी ने मुझे फास्टैग प्रोग्राम पर बात करने की सलाह दी है
उनका कहना है कि फास्टैग से यात्रा का अनुभव ही बदल गया है
इससे समय की तो बचत होती ही है टॉल प्लाजा पर रुकने कैश पेमेंट की चिंता करने जैसी दिक्कतें भी खत्म हो गई हैं
अपर्णा जी की बात सही भी है
पहले हमारे यहाँ टॉल प्लाजा पर एक गाड़ी को औसतन 7 से 8 मिनट लग जाते थे लेकिन फास्टैग आने के बाद ये समय औसतन सिर्फ डेढ़दो मिनट रह गया है
टॉल प्लाजा पर वेटिंग टाइम में कमी आने से गाड़ी के ईंधन की बचत भी हो रही है
इससे देशवासियों के करीब 21 हजार करोड़ रूपए बचने का अनुमान है यानी पैसे की भी बचत और समय की भी बचत
मेरा आप सभी से आग्रह है कि सभी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का जीवन भी बचाएं
मेरे प्यारे देशवासियो हमारे यहाँ कहा जाता है जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः
अर्थात् एक एक बूँद से ही घड़ा भरता है
हमारे एकएक प्रयास से ही हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं
इसलिए 2021 की शुरुआत जिन लक्ष्यों के साथ हमने की है उनको हम सबको मिलकर ही पूरा करना है तो आइए हम सब मिलकर इस साल को सार्थक करने के लिए अपने अपने कदम बढ़ाएं
आप अपना सन्देश अपने आईडीईएएस जरुर भेजते रहिएगा
अगले महीने हम फिर मिलेंगे
इतिविदा पुनर्मिलनाय